बहुत सारे पेड़ भी लगे हुये है जिसमे ग्रीन कलर में पत्ते लगे हुये है और यहाँ पे सामने से गेट भी है और अंदर जाने के लिए और ऊपर बादल दिखाई दे व्हाइट कलर में दिख रहे है।

यहाँ पे सामने से देखने से लग रहा है की यहाँ पर कोई गार्डन या पार्क बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए है और यहाँ पे सामने एक बिल्डिग भी बनी हुई है।

ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ भी लगा हुआ है उसमें ग्रीन कलर में पत्ते लगे हुए है और यहाँ पे सामने जगह भी पड़ी हुई है और ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू स्काई कलर में नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है यहां पे नीचे ग्रीन कलर में घास लगी हुई है पीले कलर में मिट्टी दिखाई दे रही है और यहां पे --

यहाँ पे सामने बहुत सारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए और यहाँ पे देखने से लगता है कि यह कोई जंगल एरिया हो और यहां पे उनमे ग्रीन कलर में पत्ते लगे हुए है।

यहाँ पे सामने एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे साइड में कुछ घर और बिल्डिंग भी बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं जिनमें ग्रीन कलर में पते लगे हुए हैं और ये मंदिर में वाइट कलर प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे झंडे भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे सामने मिरर लगे हुए है और यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक कलर में मशीने रखी हुई है यहाँ पे ऊपर लाइट्स लगे हुए हैं फेन लगे हुआ है और सामने से गेट --

यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं सामने से बालकनी बनी हुई है खिड़कियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे नीचे एक बोर्ड भी लगा हुआ है।